सामने कुछ व्यक्ति नजर आ रहे हैं और यहाँ पे सामने एक मूर्ति बनी हुई है जिसका गोल्ड कलर है और यहाँ पे सामने चार व्यक्ति नजर आ रहे हैं जो इनके चरण स्पर्श कर रहे हैं।

मूर्ति सामने कुछ लोग खड़े हुए है और पीछे देवी जी की मूर्तियाँ रखी हुई हैं।

यहाँ पे कुछ बिल्डिंग भी है और सामने पेड़ भी है और यहाँ पे ऊपर डोरिया लगी हुई है और ऊपर आसमान दिख रहा--

यहाँ पे सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसने ब्लैक कलर की शर्ट पहन रखी है और यहाँ पे सामने भी कुछ सामान रखा हुआ है।